ये एक ये एक स्विमिंग पूल का चित्र दिखाई दे रहा है और इस स्विमिंग पूल में कई सारे लोग नहाने आते हैं।

और इस स्विमिंग पूल में कई सारे सरक पट्टियां बनी हुई हैं और इस सरक पट्टियों पे- कई सारे लोग सरक के पानी में --

ये एक कालोनी का चित्र दिखाई दे रहा है और इधर कई सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

इस ग्राउंड में कई सारे लोग क्रिकेट वगैरा खेलने आते हैं और इधर कई सारे लोग उन लोगों का क्रिकेट मैच देखने भी आते हैं।

ये एक लॉज का चित्र दिखाई दे रहा है और इस लॉज में कई सारे लोग आये हुए हैं।